बोटल्स फ्री है कुछ फ्लावर पॉट्स रखे है।

और कुछ ब्लू कलर के बॉक्स है येल्लो कलर के बॉक्स है मल्टी कलर के बॉक्स रखे है।

और स्टैंड है और पीछे बहुत सारे मशीन रखी हुई है ब्लैक - ब्लैक मशीन रखी हुई है।

रेलिंग लगी हुई है ऑरेंज कलर से लोहे की गेट बने हुई है और वॉल पे छोटे छोटे गोल गोल बनी हुई है।

और उसमे बहुत सारी लाइट्स लगी है और ग्रीन और ऑरेंज कलर से उसे सजाया गया है।

और एल अ बॅनर लगे हुए है जो रेड अ--

और ट्रांसपॅरन्ट गेट लगा हुआ है और सामने एक ब्लैक कलर का बॅनर दिख रहा है रोड दिख रही है बाइके दिख रही है।

यहाँ सामने कुछ लोग खड़े है कुछ डेस्क पे अ खाते बैठा है।

और सीढ़ियाँ है बाहर बाइके खड़ी है ऑटो खड़े है।

ये एक क्लास है क्लास रूम है उसमे पंखे लगे है लाइट्स लगी है सामने व्हाइट बोर्ड है।

बाहर पंखे से लगे हुए है ब्लैक कलर के तीन और गेट है ऑरेंज कलर का--

यह सामने लाइन से कुछ लोग बैठे हुए है जिनके हाथ मे लोहे का हसुआ है।

यह सामने एक सामने बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग बहुत सारी खिड़कियाँ हैं और बाहर पौधे हैं।

यह सामने एक स्टेज दिख रहा है स्टेज मे बहुत सारी लाइट्स लगी है माइक रखा हुआ है।

बहुत सारा और सामने पानी की टंकी दिख रही है बिजली का खंबा दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे है।

और ऊपर पंखा लगा हुआ है डिजाइनर लाइट्स लगी है एसी लगा हुआ है दीवार पे पोस्टर टंगे हुए है।